यह एक ऑफिस है इस ऑफिस में बहुत से आदमी औरत बैठे हुए हैं।

और कुछ कुर्सियां खाली रखी हुई है।

इसमें एक लड़का जिम कर रहा है।

और बहुत सी मशीनें रखी हुई है।

और एक शीशा भी दिखाई दे रहा है।

और बहुत सी लाइने जा रही है।

और अंदर कुछ लाइटे जल रही है।

और उनके ऊपर बहुत सी लाइटें पंखे चल रहे हैं।

और बाहर दो आदमी खड़े हुए हैं।

और इधर भी एक लाल कलर का पर्दा टंग रहा है।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

और इधर बहुत बड़े बड़े पेड़ भी है।

और पिचकारी भी टंगा रखी हुई है।